मुझे इसमें एक बड़े ग्राउंड में शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

मुझे फूड सेंटर के बाहर खड़ा एक व्यक्ति दिख रहा है।

मुझे इस प्लेग्राउंड में एक साइकल भी दिख रही है।

मुझे इसमें एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिख रही है।

मुझे एक ठेला ले कर जाता हुआ आदमी भी दिख रहा है।

इसमें मुझे एक पुराना किला दिख रहा है।

इसमें मुझे घर के पास पेड़ और गार्डन में घास दिख रही है।

कैसे में मुझे लाइटिंग्स दिख रही है।

इसमें मुझे बहोत से लोग खड़े दिख रहें हैं।

इसमें मुझे रूफ में एक कैफे बना दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत से लोग बैठे दिख रहे हैं।